एक गले में स्टेथोस्कोप टाँगे हुए है।

एक खुला मैदान दिखाई नजर आ रहा है।

पीछे आसमान में हल्के बादल दिखाई दे रहे हैं।

उस पर हाजीपुर जंक्शन लिखा हुआ है।

गुलाब के फुलो पर ओस की बूंदे नजर आ रही है।

आसपास कई बड़े पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहें हैं।

कई खम्बे लगे हुए नजर आ रहे हैं।

सिडिया दिखाई दे रही है। जिसपे लाल नीला और नारंगी रंग दिखाई दे रहा है।

एक बड़ा हॉल दिखाई दे रहा है जिसमे कई सारे बैलूनो से सजाया हुआ है ।

एक फिसलपट्टी दिखाई दे रही है।

कई चट्टानें दिखाई दे रही है।

कई सारी मिठाइयाँ रखी हुई दिखाई दे रही है।